फुटबॉल के ल लग रहे हैं अपने शूज सॉक्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से पहने हुए हैं सब ने।

गाड़ी दिखाई दे रही हैं जो खड़ी हुई हैं और इसके आगे बंपर वगैरा भी लगा हुआ है और साइड में भी आप तो देख सकते हैं काफी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं एक टूरिस्ट गाड़ी है।

जिसमें पौधों की कटिंग की हुई है और उसके साइड भी गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं।

और इसकी दोनों कपो के साइड में शुगर पाउच रखे हुए है।

दिखाई दे रही है काफी ब्रेड दिखाई दे रही है। काफी हरी सब्जियां वगैरह--

तो इस फोटो में हम देख सके हैं एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

काफी दिखाई दे रही है इनसे ये बैठकर पानी में राफ्टिंग वगैरा की जाती--

टंगे हुए दिखाई दे रही है और लिखा हुआ है डी इ जे आर इ --

यहां पे सिक्स झिरो ए कुछ लिखा हुआ है।

इस फोटो में हम देख सकते हैं गुड़गांव यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही हैं।

जिसमें काफी लड़की हैं और पीछे बंदे खड़े हुए हैं इन्होंने--